ऊपर लाइट लगी बानी एक लयकी बैठे बानी उ कमपूटर पे काम करे बानी।

स्टील के बहुत सारे बर्तन रखे बानी ऊपर लाइट रखी बानी।

ऊ के पास में एक नीला बड़ा-सा बोर्ड लग लग रहु है नीचे हरियाली है ऊमे पानी भरा है।

अंदर बहुत सारी लाइट लगी बानी जो देखन में अच्छी लगे बानी।

इ एक छोटी-सी नदी बानी इ के अलग-अलग हरियाली और पेड़ बानी।

उ ने नीले रंग के कपड़े पहनी एक ने हरे रंग के पहने आगे एक घर वानी।

एक के पीछे दो खम्बा बानी उमे पेड़ बानी।

इ एक नदी बानी उके पास में एक के मंदिर बानी उ के मंदिर के पास में एक पेड़ बानी।

इ एक भवन बानी | उ के आगे एक नरियल का बड़ा पेड़ बानी | उ के पास में कछु गाड़ी रखी बानी |

इ एक नदी बानी | इ में कछु औरतेें खड़ी बानी | ऊके सर पे साडी बानी लम्बा टिका बानी हाथ जोड़े खड़ी बानी।

इ में एक बाल्टी दिखे बानी उ एक ब्रंच बानी उ पे एक कैंची और पेन रखी बानी |

ऊपर गमला और उनमे लाइट लगी है सामने भी लाइट लगी है।

अलवारी में बड़े-बड़े बॉक्स रखे बानी ऊपर लाइट बानी।

ऊके आगे बड़े-बड़े पेड़ लगे बानी चारो तरफ फूल लगे --

इ एक बड़ा सा मंदिर बानी इ का रंग --

उने सफ़ेद चादर ओढ़े बानी | एक सफ़ेद चादर टंगे बानी | ऊपर लाइट बानी सामने --

दो लयका और खड़े बानी एक के हाथ में एक बाटल बानी।

इ एक स्कूल को मैदान बानी | इ में बहुत सारे लइका लईकी बैठे बानी कछु औरते बैठे बानी |

अंदर एक नीले रंग को डस्टबिन रखी बानी एक खिड़की दिखे बानी साइड में एक बड़ा पोस्टर लगे बानी।

पेड़ बानी दो लइका बैठे बानी गार्डन हरा बानी।

उके पास में एक घर बानी ऊको रंग सफेद बानी ऊके आगे एक गेट बानी --

इ के आगे एक मर्द खड़े बानी उ के हाथ में एक पुस्तक बानी।

कैमरा बानी दूल्हा-दुल्हन बैठे बानी पंडित दिखे बानी।

के पास में एक डस्टबिन बानी उका रंग हरा बानी ऊके पास में एक बड़ा खम्बा और बानी।

पीछे एक घर देखे बानी पीछे पेड़-पौधे देखे बानी।

इ मे दो मर्द खड़े बानी एक औरत अंदर जात बानी।

एक के मर्द बानी उ हल चलात बानी आजू-बाजू पेड़ लगे बानी एक घर दिखे बानी।

इ एक कमरा बानी | इ में हरा रंग होते बानी | इ की दीवाल पे एक घड़ी बानी |

इ एक रेल बानी इ एक रेलवे स्टेशन बानी इ में एक बड़ा --

बोर्ड लगे बानी इ के पास में एक बड़ा खम्बा बानी।

इ साइड भी पेड़ बानी लाइट लगे बानी --